इस तस्वीर में काफी सारी टू-व्हीलर्स गाडियां खड़ी हुए हैकुछ लोग चल कर जा रहे है पीछे दो दुकाने है जिसमे से एक दूकान में फूड्स बेचे जा रहे है इस दुकानों के ऊपर एक येलो कॉलर की बिल्डिंग हैजिसमे दो कांच की खिड़कियां भी है।

यह तस्वीर एक तालाब के किनारे की है जहां पर साइड में एक नाव है जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है सामने एक सूरज है जो काफी धूप देख रहा है इस तरह के किनारे पे काफी सारा कचरा भी पड़ा हुआ है।

कमरा शेड बना हुआ है जो के ब्लू कलर का है ऊपर तार लगे हुए है खम्बे के।

यह तस्वीर कुछ बिल्डिंग की बहार की है जो की रेड एंड वाइ कलर का पुत्ता हुआ है यहाँ पर काफी ग्लैम बी है बहार काफी सारे रेत पड़ी हुई है और कुछ कचरा बी पड़ा हुआ है।

और यहाँ पर बोहोत सारी मशीन्स भी रखी हुई है और चेयर और टेबल भी रखी हुई है।

ये तस्वीर एक जंगल की है जहा पर काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है और सारे ही पेड़ हरे भरे है।

और एक बच्चा एक स्टारर्चू के साईड मे खड़ा है जिसने सफेद रंग का टॉप और रेड कलर की पैंट पहन के रखी है।

ये तस्वीर एक खुले मैदान की है जिसमें आधी घास और आधी कच्चा है साइडो मे सीमेंट की दीवाले है जो की येल्लो और रेड कलर की पुती हुई है एक खम्बा है जिसमे तार है पीछे बड़े सारे पेड़ लगे हुए है।

ये तस्वीर किसी शोरूम के बाहर की है जहाँ काफी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है।

ये एक तस्वीर है जिसमे टू फ्लोर्स की बिल्डिंग है एल शेप मे जो पुरी वाइट कलर की पुति हुई है इसमें काफी सारे दरवाजे है जो की क्रीम कलर के है।